यहाँ पे भैस भी है। एक आदमी उसके देखभाल के लिए आया हुआ है और काफी साफ-सुथरा है। ऊपर में करकट लगा हुआ है।